ये एक देवी मईया का मन्दिर है। मन्दिर के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है इसके ऊपर देवी मईया की फोटो छपी --

ये एक दुकान है। दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है।

गाड़ी फूलों से सजी हुई है। गाड़ी में लाल रंग के फूल लगे हुए हैं और हरे रंग की पत्तीयां लगी हुई है। गाड़ी के पीछे पेड़ भी खड़े हुए हैं। बड़े --

ये एक जीप खड़ी हुई है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हुईं हैं। एक ठेला लगा हुआ है।

ये एक सड़क है। सड़क पर आटो खड़ा हुआ है। इसके पीछे भी एक आटो खड़ा है। आगे वाले आटो में एक आदमी बैठा हुआ है।

लड़को के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और दूर की तरफ में भी कई पेड़ लगे हुए है। खुद लड़के आ जा रहे हैं।